मिठाई का शॉप है जिसमे काफी सी-सीडिया भि है बहार मे बहुत सारी चेयर भि अदर मे है साथी साथ बहुत सारे एक कटोरो बना हुआ है जिसमे बहुत सारे डब्बे रखे हुए है मिठाई सामने भी एक --

सामने जो जमीन है यहाँ पे दो सीढ़िया है एक बाइक भी खाड़ी हुई है और वाल जो है साइड की है जो येलो --

सिनेरियो जहाँ पर सामने है ग्रीन ग्रसिस है पत्ते है बहुत सारे कुछ- कुछ डालियाँ भी सुख गई है दूर की तरफ।

नीचे फ्लोर मे भी कुछ कागच गिरी हुई है बच्चे काफी सारे डांसिंग पोज़ में खड़े है हाथ में त्रिशूल लिए साड़ी पहने हुए है ग्रीन ऑरेंज कलर के पास साइड में पर्दा लगया गया है।

साथ ही साथे ये वोल जो है येलो कलर से कलर की गयी हैं। ऊपर क तरफ लाइट लगाई गयी है गोल-गोल लाइट निचे की जो है वो --

सब्जिओ की काफी सारी झुडिया है गाड़ी के ऊपर जिसमे काफी तरह-तरह के फल है जैसे के एप्पल केलेसंतरे इसके अलावा अ-और भी आ बोहोत तरीके के फल इसमें दिखाई दे रहे हैं।